यह एक तालाब जहां सब कोई पूजा करने के लिए आते हैं छठ पूजा में बहुत ही ज्यादा जनसंख्या में भीड़ होता है यहां छठ पूजा में बहुत ही नामी तालाब है देखने में।

यह एक डैम है जो बहुत ही बड़ा डैम है यहां लोग दूर-दूर से घूमने के लिए आते है यहां बहुत ही ज्यादा जनसंख्या में पानी होते है यहां बहुत ही ज्यादा एरिया में फैला हुआ है बहुत ही सुंदर नजारा यहां का देखने में लोग यहां पर घूमने के लिए फोटो वोटो खींचते हैं बहुत ही नामी जगह है ये।